अ कैंडल जला के गॉड से प्रे करते हैं और उनकी चाहे जो भी विशेस होती है वो गॉड को बोलते हैं।

क्रिस्चियन का अ पूजा स्थल होता है गिरजा --

इ यहां कुछ लोग भी आये हुए है मछली खाने के लिए मछली खरीदने के लिए और मछली खाने से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है।

जो की फ्री ए हेल्थ कैंप है और यह स्वास्थ्य --

और वो अ बहोत लग रहा है कि अच्छा एक्ट करेंगे स्कूल में उन्हें काम दिया होगा।

मस्ती ये करने के लिए यहां पे झूला टाइप से लगा हुआ है जो की बच्चो को काफी मजा आता है।

यहां पे बोहोत सारे बुक है जो कि बोहोत बड़ा है यह सेंटर और यहां पे बोहोत सारे लोग है।

बच्चे है जेंट्स होंगे लड़के होंगे और --

क्यूंकि यहां पे बुक का जो स्टोरेज है।

रनदार भी नज़र आ रहे हैं और यहां पे बोहोत रंग के मछली है।

कुछ बड़े है बोहोत साइज के मछली है कुछ बड़े साइज के है कुछ छोटे साइज के है कुछ मझले साइज के है।

और यहां पे एक लेडी भी है जो कि मछली की खरीदारी कर रही है।

जो कि अच्छे दिख रहे है दोनों साथ में वो अपना फोटो भी क्लिक करवाए है।

जिन्हे लग रहा है देखने से ही लग रहा है इन्हे कही जाना होगा --

हँ यह एक चर्च है यहाँ पे हँ कुछ टीचर भी हैं सिस्टर भी हैं और --